इस बिच के चारो तरफ हरियाली हीं हरियाली दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी तरीके से की जाती है।

ग्राउंड है इसमें बहोत सारे बच्चे क्रिकेट का आनंद ले रहे है और खेल भी रहे है इसमें थोड़ा बहोत घास भी है |